यहाँ तीन लोग है जो है एक रूम की मरम्मत करते हुए नज़र आ रहे है पेटिग चल रहा है वाइट कलर की पेंट है खिड़की है दो दो तीन लोग है कई सामान बिखरा हुआ हैं।

एक ब्लू कलर की शीट है जिसमे पेपर से ड्राफ्ट बनाया गया है बहुत सारी--